मी चप्पल पेहना हुआ है और --

बैठने वाला है और इसमें झूला भी --

ठेला चला के आ रहा है और --

गया है और सब्जी ले रहा और --

एक सौ चौदह रूपए पैकेट --

निहुर के कुछ काम कर रहा है और इस --

लिए हुए हैं और माथा पे --

एक-दो आदम फोटू खींच रहे हैं और एक --

दो बड़े-बड़े खम्भे भी लगे हुए --